यहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेलने के लिए खेलने को --

और यहाँ पर फोटो शूट करावा रहे हैं।

ये एक पार्क है। पार्क में --